जगाया गया है और अति सुन्दर दिख रहा है।

डाक घर है सामने हरा रंग से सजाया गया पट्टियों में रेड कलर है।

आकर अपने दर्शन करते हुए सरदार रोज दिन आते जाते रहते है और अपने आस्था का विषय बने रहता है इस प्रकार के मंदिर में हमेशा आते है।